बड़ा सा पोम एक नोटिस पोस्टर लेके खड़े हैं फ्री रूलर हेल्थ कैंप जहाँ एक का प्रचार कर रहें हैं पीछे एक बड़ा सा स्कुल है पेड़ सब है।

एच.डी.एफ.सी. बैंक है ए.टी.एम. है ए.टी.एम. में बहुत सारा आदमी लाइन लगा के खड़ा है उम्म एक आदमी अंदर में है जो कि शायद पैसे निकाल रहा है ए.टी.एम. के ग्लास पे एक टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है।

आदमी है हाथ में फोन है व्हाइट कार-रेड और ब्लैक कारपेट है मिरर है मिरर है वो सामने से सेल्फी ले रहा है।

वो अपना बॉडी को शो कर रहा है इसमें प्लस इसमें बहुत सारा पीछे एक इक्विपमेंट सब रखा हुआ है जिससे जिम किया जाता है आ लड़की का स्टीकर लगा हुआ है जमीन पे।

पीछे बोहत सारा फल रखा हुआ है| सूप है केला सब दिख रहा है।

एक बरांडा का फोटो है जहां पर उम्म चारो बगल लड़की सब बैठी हुई है और कुछ डिजाइन डिजाइन में रंगोली रेडी कर रही है।

ये किसी जगह का फोटो है जहां पर एक छोटा सा दुकान है पीछे शायद पेट्रोल पंप का लोगो रिलायंस का लोगो लगा हुआ है।

बहुत सारे आदमी है जो की मास्क पहन के रखे है व्हाइट कलर का एक आदमी कुर्ता शर्ट पहना हुआ एक आदमी हेलमेट लगाया हुआ है बहुत सारा ट्यूब लाइट --

वो इंस्पेक्शन कर रही है एक पिंक कलर का कार्ड बोर्ड है एक वाइ एक लड़का खड़ा --

एक हॉस्पिटल का फोटो है यहां पर एक महिला जो कि नो अपने एक कॉपी में कुछ लिख रही है एक आदमी जो बगल में बैठा हुआ है कुर्सी लगा हुआ है पीछे बड़ा सा एक पोस्टर है।

एक लकड़ी का गेट है टेबल पर बहुत सारा दवाई सब रखा हुआ है सेनिटाइजर सब रखा हुआ है।

घर छत का काम चल रहा है जहाँ पर मजदूर सब है| मजदूर सब लकड़ी का तक्ता लगा रहे हैं| सब मजदूर सब काम-ऊम कर रहे हैं| बगल में घ घर सब है।

रात का टाइम है एक बांस एक बांस लगावल आगे से एक गेट है।

एक बड़ा-सा पंडाल है मंदिर जैसा ढांचा बनाया हुआ है जहां पर बाहर में एक मूर्ति रखा हुआ है।

एक रास्ता है अम्म यह रास्ता पे दो रिक्शा है न्यू न्यू रिक्शा है बैकग्राउंड में बांस का स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ ब-बगल में बहुत सारा कचड़ा फेका हुआ है।

बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है बहुत सारा आदमी है कुर्सी पे बैठा हुआ है एक लेडिज है शायद सूट सब पहनी हुई लाइट सब ए.सी. है।